यह एक बहोत बड़ा होटल है और इस होटल के सामने एक गणपति --

यहाँ पे बहुत ई बड़े प्लास्टिक में फूलों के गुच्छे रखे हुए हैं जो एक माली फूल बेच रहा है जिसमें उसे सूर्यमुखी फूल पीले रंग की --

दही फूचका पपड़ी चाट और बहोत सारा यहाँ पे चीज मिलते हैं और उसके बगल में एक छोटा सा दुकान है। उन दुकान में खाने का सामान मिलता है।

इस सैलून स्स के दरवाजे सभी को देवाल पर शीशी लगाए गए हैं और बहुत सारे सामान हैं। यह सैलून --

और इस कमरे में बहोत सारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं जो यह एक प्रकार का कक्षा है।

इलेक्ट्रिक फर्नीचर और सबसे ऊपर श्री इलेक्ट्रानिक्स ऑफ फर्नीचर और इसके बगल में कुछ बैनर भी लगे हुए --

ये यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है गुरुकुल शांत बोल रहा हैं।

यह घर दो तल में और इसकी पूरी तरह से ब्लू लाईटों से सजाई गई है।

यह एक इलेक्ट्रिक मिस्त्री है और यह मिस्ती पूरी तरह अपनी सुरक्षा से लैस कुछ इलेक्ट्रिक काम कर रहे हैं।